व्यक्ति के सामने हथोड़ी पड़ी हुई है लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ एक वायर नज़र आ रहा है काला कलर का--

--टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर एक लाल कलर की स्टूल नज़र आ रही है सामने एक स्टेज बना हुआ है जिसपे काफी बड़ा सोफा लगा हुआ है पीछे एक पर्दा लगा हुआ है जिस--

पीछे लोहे की रेलिंग लगी हुई है जिसपे जालियां लगी हुई है साइड में काफी बड़े पेड़ नज़र आ रहे है पीछे तरफ में भी काफी ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर में हमें एक टेंट नज़र आ रहा है टेंट के नीचे काफी बड़े बांस पड़े दिखाई दे रहे है यह टेंट में एक--

स्लाइडिंग के बाज़ू तरफ में लाल कलर के शेड दिखाई दे रहै है यहाँ पर काफी वयक्ति नज़र आ रहै है पीछे तरफ में काफी ज्यादा एरिए में हर--

तो वो दिखाई दे रहा है किसी बच्चों के पास सफ़ेद कलर की कागज़ नज़र आ रहे है पीछे की तरफ में एक खिड़की नज़र आ रही है साइड में दो खिड़की है जो की बंद है।

सीमेंट के जिने नज़र आ रहे है और साथ ही एक छोटी -छोटी गृप बने हुए दिख रहे है।

यह तस्वीर में हमे काफी बड़ा एरिया नज़र आ रहा है जिस एरिए में हमें काफी ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है सामने में --

यह तस्वीर में हमें जिम वाली मशीनें नज़र आ रही है जोकि हरे कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर गोल टाइप का एक लोहै का --

यह तस्वीर में काफी ज्यादा लोग नज़र आ रहे है और यह पर एक काफी बड़ा एक गोल्ड कलर का एक झूला दिखाई दे रहा है यहाँ पर सामने एक--

दिवार के बहार जो हमे काफी बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है यह दिवार के साथ लगा हुआ एक टीन का घर भी नज़र आ रहा है यह पर सफ़ेद कलर के लोहे के--

एक लाल कलर का चिन्ह नज़र आ रहा है साइड में लोहै के बेड नज़र आ रहै है और यहाँ पे एक काफी बड़े --

टावर नज़र आ रहा है जो की नीले कलर का है टावर के सामने एक काफी बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है और स्लाइडिंग के सामने भी एक टावर और लगा हुआ है।

काफी बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है ग्राउंड के सामने काफी ज्यादा पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर में हमें काफी ज्यादा पानी नज़र आ रहा है पीछे काफी ज्यादा स्लाइडे नज़र आ रही है एक--

यह तस्वीर में हमें एक लोहा नज़र आ रहा है जो की--

वेट के कॉलम बने है हाथी के बिच में से भी दोनों तरफ से भी कॉलम नज़र आ रहै है यहाँ पर एक व्यक्ति नज़र आ रहा हैं।

सामने एक तराज़ू नज़र आ रहा है दुकान के बाहर दो कुर्सी नज़र आ रही है दुकान के अंदर एक लाल कलर की फ्रीज़ --